एल_सी_डी के ऊपर एक बॉक्स पड़ा हुआ है।

यहां हम देख सकते हैं कि यह एक सैलून है जिसका नाम बाल दाढ़ी--

जिसका नाम श्याम सुपरमार्केट है।

एक बड़ा सा टेबल हम यहां देख सकते हैं।

काउंटर के ऊपर चोकोपाई के डिब्बे हम--

काफी सारे मोबाइल्स और यहां पर--

ओ ऐसा लग रहा है जैसे वह कोई अल्ट्रासाउंड कर रहे हों।

और यहां पर हम देख सकते हैं कि पहाड़ भी है।

पड़ी हुई है जो ब्राउन रंग की है उनके ऊपर नीली और पीले रंग की गद्दिया रखी हुई है।

यहां हम देख सकते हैं कि यह एक पार्क है जहां काफी सारे झूले लगे हुए हैं।

एक बच्चा भी यहां बैठा हुआ है।

और लाइट्स वगैरह बच्चों के खेलने के झूले यहां लगे हुए हैं।

पहाड़ पीछे नजर आ रहे हैं।

यहां हम देख सकते हैं कि यह विजय पुस्तक भंडार--

सकते हैं यहां हम देख सकते हैं कि यह एक लकड़ी का घर बनाया गया है लकड़ी की ग्रिलिंग यहां लगी हुई है और लाल रंग का मैट बिछा हुआ है।

यहां हम देख सकते है कि यह एक बहोत बड़ा सा तालाब है जिसमें एक बहोत बड़ी नाव है जिसे कुछ आदमी चला रहे है।